यहाँ पर एक ल चौड़ी सी रोड बनी हुई है जिसके ठीक बगल मै लाइन से चार रूम बने हुए दिखाई दे रहे है जिनके छत टेंट लगा के बनाई गई है येह टेंट एक चबूतरे के ऊपर बने हुए दिखाई दे रहे है।

किसी जगह पर पथरो का एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ दुरी पर एक उचि सी दीवाल दिखाई दे रही है जो की शायद किसी इसकिली के बाहरी दीवाल है।

इसका एक हिस्सा हरा भरा दिखाई दे रहा है और एक हिस्सा पर प्लेन जमीन बनाई गई है जहाँ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं इन पेड़ों की छांव में सीमेंटेड कुर्सियाँ भी लगी हुई है कुर्सी पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

एक रोड दिखाई दे रही जिसके दोनों तरफ लाइन से घर बने हुए नजर आ रहे है एक तरफ एक ग्रीन कलर का घर बना हुआ है जिसके बहार एक स्कूटी या बाइक खड़ी हुई है जो की एक कपडे से ढकी हुई दिखाई दे रही है।

वाटर पार्क दिखाई दे रहा है जिसके बिच मै दो स्विमिंग पूल बने हुए नजर आ रहे है दोनों स्विमिंग पूल मै कुछ लोहे के पाइप लगे हुए है जिस पर

यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसके बीचो-बीच एक बड़ी सी नदी है जो की काफी ज्यादा चोड़ी और काफी ज्यादा लम्बी भी दिखाई दे रही है इस नदी से कुछ दुरी पर उचाई पर तीन-चार लाइन से टेंट लगे हुए है।